मकान दिख रहा है दो पेड़ है ऊपर से ब्लाक होल का दरवाजा है जो कि सामने की तरफ है।

यह एक स्टेडियम ग्राउंड है जोकि बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं एक ब्लू रेड कलर का और वो नीली ब्लू कलर का शर्ट में सामने सामने खड़े हैं ।

एक स्टेशनरी है जिमे पेन पेंसिल रबर शार्पनर बहुत सरे इंक्स फेविकोल और एक कुर्सी दिख रही हैं जिमे बहुत सरे पेनस हैं ।

और एक बैनल लगा है ए कुर्सी लगी ग्रीन कलर की जिसमें वो आजू-बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हैं पीली कलर की मिट्टी रेती रखी है।

बहुत सरे प्लेयर्स दौड़ रहे हैं जिमे ब्लू कलर के दो व्यक्ति है जो आगे दौड़ रहे हैं और रेड कलर के व्यक्ति पीछे दौड़ रहे हैं ग्राउंड के पीछे पेड़ हैं।

और साथ ही में ग्राउंड ग्रीन कलर का है और ब्लू है ब्लू कलर की शर्ट पहनी हैं टोपी पहनी है और जिमे शूज पहने हैं--

खाली सा ग्राउंड है जिसमे तालाब है बहोत सारे पड़े से लोग घूम रहे है दो-तीन लोग घूम रहे है गार्डन में और उपर बादल है।

यह एक सैलून है जिसमे ब्लैक कलर का कपड़े रखा हुआ है और ब्लू कलर की रिंग्स रखी हुई है आईना है लाइट लगी हुई है और डिजाइनरदार बल्ब से और एल_ई_डी लाइट लगी हुई है।

यह एक स्टेशनरी है जो कि इन बेनर का नाम है कोरा कागज यहाँ पे मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइन्स मेनेजमेंट बायोटेक एंड अंदर हायर एकेडमिक बुक्स एंड फॉर्मस दिखाई दे रहे है।